तीन लोग नीचे बैठे हुए है लोगों ने दो बेनर पकर रखे है।

यह एक रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म है यहां पे एक सुधा पार्लर है।